दोस्तो यहाँ पर ये दो हिरण हैं और इनके साथ कोई ये शुतुरमुर्ग है| शायद ये शुतूरमुर्ग ही लग रहा है मुझे तो और पता नही क्या है आप बताना देख के |

दोस्तों यह जो आप देख रहे हो ये बदाइयों का पार्क है जोकि काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे काफी अच्छे पेड़ पौधे लगाए गए है फूल लगाए गए हैं।

दोस्तो ये जो आप नजारा देख रहे है ये किसी नदी या नहर का नजारा है जो की --

दोस्तो ये भी कोई पहाडी है जो कि बोहत ही ऊंची पहाड़ी है श्रंखला है जिसको बोहत ही ऊंचाई से अगर कोई इससे कूद जाता है --

दोस्तों यह जो आप तस्वीर देख पा रहे होगे। ये एक मेडिकल स्टोर है। यहाँ से हमको काफी दवाइयाँ मिल जाती हैं।

दोस्तों ये भी एक लाइब्रेरी है। यहां पे कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं।

ये मंदिर बोहोत ही प्रचलित माना जाता है। ये मंदिर बदायूं में स्थित है।